एक दरवाजा है एक टी_वी लगी है।

बाहर पेड़-पौधे लगे हैं।

बिल्डिंग पर खिड़कियां लगी हैं।

इस इमेज में एक रूम है।

रूम में गाउंस टंगी हैं।

इस इमेज में एक मशीन है।

घर पीले और सफेद कलर का है बहार पेर लगे हैं।

तार ब्लैक कलर के हैं।

घड़ी ब्लैक कलर की है।

इस इमेज मे एक मस्जिद है।

मस्जिद के ऊपर दो टंकी हैं।

इस इमेज में एक टेबल लगी है।

टेबल ब्राउन कलर की है।

इस इमेज में एक पार्क है।

शॉप के बाहर टेबल कुर्सियां रखी हैं।

इस इमेज में एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के ऊपर बंबू लिखा है।

शेड डला है नीचे टाइल्स लगे हैं।

तीन लोग चल रहे हैं।

पीछे आसमान दिख रहा है ऊपर बादल दिख रहे हैं।

मीनार पीले कलर के हैं।

इस इमेज में एक सड़क है सड़क पर टाइल्स हैं।

कुर्सी रखी है कुर्सी ब्लैक कलर की है।

सड़क पर लोग खड़े हैं।